यहाँ पर एक दुकान दिखाई दे रही है दुकान पे एक बोर्ड लगा है जिस पे--

आसपास बड़े पेड़ पौधे दिखाई दे रहे है चट्टान दिखाई दे रही है।

यहाँ पर एक नदी दिखाई दे रही है नदी में चारो तरफ पानी-पान दिखाई दे रहा है पानी--

यहाँ पर एक स्विमिंग पूल दिखाई दे रहा है स्विमिंग पूल में पानी भरा हुआ है जिसमे बच्चे --

यहाँ पर एक नदी दिखाई दे रही है नदी में पानी दिखाई दे रहा है।